वहां पर कला कला कुछ तिल का निशान भी दिख रहा है पलंग पे न्यूज़ पेपर भी है सामने दीवार पर घड़ी भी दिख रही है उसने पैर को--

एक मैकेनिकल शॉप सर्विस दिख रही है।

कार से टिकाकर कुछ समान भी रखा हुआ है।

पेपर जैसे पड़ा हुआ दिख रहा है एक प्लेट टाइप दिख रहा कुछ रेड से डिब्बी टाइप कुछ दिख रही है।

पीछे एक बोर्ड सामने भी एक बोर्ड है ये डस्टबिन दिख रहा पीले कलर का पीछे ढाबा है साइड में कपड़े सूख रहे हैं।

जिसमें अ व्हाइट कलर और ब्लैक कलर से पेंट किया गया है।

जहां पे एक अलमारी है येलो कलर का पर्दा है डस्टबीन की बाल्टी दिख रही है डेस्क के ऊपर फ्लावर टीटेंटी--

सूर्य की किरणे आ रही है नीचे सूखा सूखा पहाड़ दिख रहा है सामने एक धुंधला सा--

यह कोई सी शॉप दिख रही है जैसे डेयरी जैसी या बेकरी जैसी।

टूटा हुआ पहाड़ जैसा कत पहाड़ी जैसा लग रहा है झरना जैसा।

इसमें फ्लॉ अ ब्ला बैलून से सजाया गया है।

के हाथ में थैली पकड़ के जा रहा है एक आदमी ऐसे जा रहा है।

ऊपर एक क्रेन से आदमी चढ़े हुए हैं इसके ऊपर स्टैंड से पीछे से एक आदमी ऊपर देख रहा है।

नीचे फ्लोर पर राउंड सर्कल जैसी टाइल्स लगी हुई है।

उस खेत में किसान डंडा गड़ा हुआ है जिसमें पीले कलर का कपड़ा लगा हुआ है पीछे पहाड़िया नजर आ रही है।

रेड मशीन जो वेट के लिए होती है। कार के ऊपर रखा एक वैन नीचे एक आदमी कार सुधार रहा है दो मशीन दिख --

यह कुछ वायर की यह तार--

ऊपर लाइटर लगी है तार दिख रहे हैं बीच में पीछे खंभे तार के दिख रहे हैं एक टंकी दिख रही है पानी की एक कार जाते हुए दिख रही है।

अंदर एक आदमी कमर पर हाथ रख कर खड़ा हुआ है।

दो से तीन एरोतीन एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जैसे दिख रहे हैं।

अ दो तीन आदमी और एक छोटी ट्रायली जैसा एक लेके खड़ा हुआह।

छोटी नदी जैसी नज़र आ रही है जिसमें एक औरत चप्पल लेके आगे जा रही है। दो लड़कियां पीछे है एक आदमी--

यह एक पेड़ पौधे की नर्सरी दिख रही है जीसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

सामने भी पॉट रखा है फ्लावर का कुर्सी दिख रही है रेड कलर की दूरबीन जैसा स्टैंड दिख रहा है।

थोड़ा बहुत से खेत जैसा भी दिख रहा है।

नीचे भी कई प्रकार की लाइटिंग लगी हुई है दो फ्लावर पॉट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।